और समुद्र की छाती को चीरते हुए अपनी राह तक पहुँचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ।

कहीं किसी विवाद में गए हुए समझ मे आ रहे हैं।

यह एक जीम सेंटर है।

फर है यह काफी चीज़ में उपयोग रहता है जैसे खेतों में इसका उपयोग किया जाता है।